इस तस्वीर में हमें एक पहाड़ के ऊपर से नीचे का दृश्य दिखाया गया है।

डुबकी लगाते हुए देख सकते हैं।

इस तस्वीर में हमें एक होटल के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यहां ढाबे के साथ हमें एक डेली नीड की दुकान भी दिख रही है।

जहां पर हम दे सकते है की ढाबे के आगे एक सड़क जा रही है।

हमें यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक जू का दृश्य दिखाया गया है।

इस पिंजरे मे हमे तीन कछुए यानी टर्टल देखने को मिल रहे है।

इस तस्वीर में हमें एक पार्क का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें दो बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिल रही है।

यहां पर एक इमारत के ऊपर क्रीम कलर के ये टाइल्स और एक के ऊपर ब्लैक कलर के टाइल्स लगे हुए हैं।

यहां पर हमें दिख रहा है कि पानी पहाड़ों में से होते हुए नदी तक पहुंच रहा--